टेंट बना हुआ है जहां पर दरी बिछी हुई है यहां पे कुछ लोग डोब दे रहे है।

ये है और रजाईयां भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर दरवाजे खिड़की भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक कार खड़ी हुई --

बहोत सी भीड़ नज़र आ रही है यहां पर कुछ लोग कतारों मे नजर आ रहे --

रहा है जहां पर क्रैंपो फ्लो लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर हनुमान आयुर्वेदिक लिखा हुआ है।

इस इमेज में यहां पर क्लिनिक दिखाई दे --

इस इमेज में यहां पर दीवार पर होटल लिखा हुआ--

यहां पर दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कपड़े नज़र आ रहे हैं और एक व्यक्ति भी बैठा दिखाई दे रहा --

और एक पीली बस नजर आ रही --

इस इमेज में बजरंगबली की मूर्ति दिखाई दे रही है हाथ में गोटा पकड़े हुए --

इस इमेज में यहां पर होटल दिखाई दे र--

और लाइट भी जलती नजर आ रही है।